और यहां पे अलमारियां दिख रही है जैसे थोड़ा बहोत सामान रखा जा सकता है काउंटर में एक कांच रखा हुआ है वो दिख रहा है और साइड में सिट्रोन का लोगो बना हुआ है।

और बगल में कपड़े की दुकान समझ में आ रही है एक बुलेट खड़ी हुई है वहां पे ब्राउन कलर की--

और झूला दिखाई दे रहा है इधर से छोटे छोटे बच्चों को जिसमें झूलाया जाता है एक साइड में व्हाइट कलर की खिलौने वाली कार दिखाई दे रही है।

जिसमें साइड में जालियां लगी हुई है एक पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि बड़ी सी बनी हुई है दो तीन मंजिल की--

और मुझे एक साइड में बाइक दिखाई दे रही हैं जोकि खड़ी हुई है आसमान में हल्के बादल--

जो कि खड़ी हुई है एक नशिनी दिखाई दे रही है जो लोहे की है रखी हुई है एक मुझे हरे कलर का पाइप दिखाई दे रहा है जो रखा हुआ--

मुझे इस फोटो में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया --

जिसमें कि एक चैनल गेट दिख रहा है मुझे और अंदर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।